हरा गार्डन भी दिखाया गया है जो बहुत ही सुंदर है।

इस इमेज में समुद्र का चित्र दर्शाया गया है जिसके एक साइड छोटे छोटे पहाड़ दिखाई पड़ रहे हैं।

और इसकी छत पे सुंदर-सुंदर लाइट की डिजाइन लगी हुई है।

इस इमेज में पहाड़ को दर्शाया गया है।

इस इमेज में गेंदा के चित्र को दर्शाया गया है।

हुआ है। जिसके नीचे अच्छे- अच्छे डिजाइन किए हुए फूल को लगाया गया है।

जिसमे टीशर्ट पैंट --

यह एक ऐसा ईमेज है जो कार्य मुक्त चिकित्सा --